ये बुक का बहुत बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है जहां पे सात-आठ आदमी खड़े हैं बुक देख रहे हैं और दो आदमी के पीठ पे बैग भी टंगा हुआ है।

जहां पे तीन बुलेट मोटर साइकिल खड़ा है एक टेबल के ऊपर खड़ा है और दो नीचे खड़ा है कोई आदमी--